इ ठामूंन एगो बैंक हई जेकर नाम बैंक ऑफ बरोदा हई | ऐक मै एगो गेट हई जेकी लकड़ी के गेट हई | अ ई ठामूंन एगो आदमी काम करइ छइ जेकी लैपटॉप पर करइ छइ | लैपटॉप जैकी खुलल हई ।

ठमून एगो डबरा हय जैमें की बहुत --

सारा गन्दा पानी हई और ऊपर ऊपर से हरियल हरियल काईयो लागल हई उइ के आगे में एगो हरियल हरियल घास वाला खेत हई जेकर बगल में पेड़ सब भी हई | पेड़ देखे में भूरा कलर के लगइ छै | लगाई छै सुखा गेल हई ।

अए ठा मन एगो रोड है जेकर दूगो रास्ता है एगो रास्ता में एक बगल उजल कलर के घर है घर के नीचा पंजाब नेशनल वाला बैंक है।

आई थोमान एगो छल दीवारी जी का है जेकरा चारो ओर से घेर देले हाई और ओइमे एगो नाडी धइल है।

इ एगो खेत जेहन है जेकी एमें नीचा में घांस सब है घांस सब ओते सुन्दर है और ओइमे --

और आई थोमन से देखेमें आसमान बड़ी सुन्दर लगे छै और बगल में एगो पेड़ो है।

फॉर्चून वाला सोयाबीन है और पारले-जी बिस्कुट है।